और अंदर भी लाइट रखी है एक व्यक्ति बैठा इसमें--

और सफेद रंग के टेबल पर कपड़ा रखा है टॉर्च रखी--

साइड में व्यक्ति खड़ा है दूसरी दुकान पे।

ये एक शादी है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं।

सामने बिल्डिंग है पीछे घर है इसके।

एक सोफा है और इसमें तीन गत्ते रखी--

इसमें बहुत सारे आदमी है जिन्होंने ऑरेंज कलर की पोशाक पहन रखी है।

नीचे बर्तन है इनके खाने के नीचे पन्नी रखी--

और पंखा है और सामने डी_जे रखा--

बहोत सारे व्यक्ति हैं माता की मंदिर में बैठे हैं।

और बहुत सारे गुब्बारे लग रहे है सामने ए_सी है।

और स्टॉल लग रही छोटी छोटी दुकाने लग रही--

ऊपर छत पे दीवार है और इस साइड छत हैं एक छत के ऊपर पन्नी लग रही हैं।

एक ओर डंडा पड़ा है अंदर एक कुर्सी है।

सामने बहुत सारे मशीन रखी ऊपर पोस्टर लग रहा है उसका।

और पीछे ऐ_सी लग रही है पंखा लग रहा और पिलर है एक।

और इसमें बहुत सारी कार हैं आदमी हैं।

और एक साउंड पंखा है एक गेट लग रहा है।